और टेबल के ऊपर बर्तन रखे हुए हैं और खाना वगैराह भी लगा हुआ है।

और पर्दे भी लगे हुए हैं यहां पे बहुत सारे पंखे भी लगाए हुए हैं।

बहुत सारे लोग यहां पर बैठके कुछ खा रहे हैं गमले भी रखे हुए हैं।

दुकान के अंदर टेबल के ऊपर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

रखी हुई हैं और एक डमी लगी हुई है।

बना हुआ हैं एक चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ हैं।

कान के अंदर बहोत सारी सेलो टेप्स पेन रखे हुए हैं।

और एक कंप्यूटर भी लगा हुआ है रेड कलर का पर्दा और दो स्कैनर्स की फोटो भी लगी हुई है।

यह एक वाटर पार्क है पार्क के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे लोग नहा रहे हैं और झूले झूले भी लगे हुए हैं।

कापिया रखी हुई है एक प्रिंटिंग मशीन भी पड़ी हुई है।

बैलून रखे हुए हैं बस के ऊपर भी।

और दीवार के साथ एक मिरर भी लगा हुआ है।

ये एक बर्ड शॉप है शॉप के अंदर बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए हैं।

तिरन भी लगे हुए है यहां पर--

यहां पर एक हॉल है हॉल के अंदर कोई प्रोग्राम चल रहा है।

स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े डाले हुए हैं।